जो एंजेल टाइप से बने हैं उन्होंने सुंदर सा कोट पहना है और आगे कुछ लोगो बना हुआ है।

अ एक अंदर आइसक्रीम होती है लेकिन जो टैप टाइप से कुछ बना हुआ होता है उसे वो बाहर आ जाती है सामने ऊपर जो है तीन--

रेलिंग लगी हुई है जिसमें स्टील और शीशे का काम किया हुआ है।

बाहर दो तीन होल्डिंग लगी हुई है एक तो शायद गोल्ड लोन दिखाई दे रहा--

इसको लाल और सफेद रंग के गुब्बारों से सजाया गया है।

ये शर्मा ऑडियो के नाम से ये डी_जे --

और बाहर गाड़ियां खड़ी नज़र आ रही है। ये पता नही कौन सी कम्पनी का है? लेकिन ये कोई कार का शोरूम ही है।

जो कि इसको सेट कर रहा है और ऊपर जो एक बंदा बैठा है वो देख रहा है कि ध्यान से कि ठीक से बुनाई हो रही है या नहीं हो रही।

इसके ऊपर लिखा है होटल मिराज बार एंड रेस्ट्रो यानी कि इस होटल में बार भी है और रेस्टोरेंट की भी फैसिलिटी है।

यहां पे सामने एक इंसान कुछ लंबा लंबा कुछ कर रहा है। शायद ये लोहे की कुछ ग्रिल बना रहा है।

लैंप लाइट जो ऊपर लगी है बहोत सुंदर ले लग रही है और इस रेस्टोरेंट मे पांच छे लोग भी बै--